यहां पे दो बोर्ड लगाया हुआ है।

सामने एक कार और एक बाइक दिख रहा है।

यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर छपे हुए हैं।

यह एक दुकान है दुकान के बाहर पोस्टर में लिखा हुआ है कंप्यूटर बाजार डेल

यहां पे पार्टी मनाया जा रहा है।

बारा का रंग पीला और गुलाबी है।

यहां पे बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं।

घर में बहुत सारे पोस्टर लगाए हुए हैं।

घर में एक घड़ी दिख रहा है।

यहां पे सफेद रंग का बहुत सारे गेंद दिख रहे हैं।

आसमान में बहुत सारे बादल दिख रहे है।

तीन कुर्सियां रखे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे डब्बे भी रखे हुए हैं।

यह एक स्विमिंग पूल है जिसमें बहुत सारे लोग पानी में हैं।

अन में बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं।

यहा पे तीन आदमी दिख रहे है और यहा पे सड़क भी दिख रहा है।

यहां पे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।